बहुत सारे पेड़-पौधे नज़र आ रहे है।

इस तस्वीर में खेत में बोनी हुई है। नजर आ रहा है। दूर दूर--

ये एक हवाई अड्डा है। जहा पर हवाई जहाज खड़ा हुआ है। जो की सफ़ेद और नीले रंग का है। जिसके ऊपर अंग्रेजी जी में इंडिगो लिखा है। आसमान और बादल साफ नजर आ रहा।

मजीद दिखाई दे रही है जहा पे बांसे बनी हुई है एक आदमी जाता हुआ नजर आ रहा सड़क पर नीले रंग के ऑटो है।

और उसके सामने एक ठेला खड़ा हुआ है जिस पर लिखा है पेहलवान चाइनिज ।

ये एतिहासिक सामारक है। जिसकी दीवारों में मूर्तिए बनी हुई है। और ये उसका द्वार नजर आ रहा है।

जहा पर मिट्ठी उठाने वाले मशीन रखी है। एक पुरुष दिखाई दे रहा है। नीला आसमान और पेड दिखाई दे रहे है।

पेड़ पौधे नजर आ रहे है। और घने बादल नजर आ रहे है। और दूर चट्टानें नजर आ रहे है।

तस्वीर मे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है और दूर दूर तक घनी खाई नजर आ रही है और आसमान दिखाई दे रहा है।

ये कोई प्राचीन मंदिर नजर आ रहा है जिसकी दीवारों मे मूर्तिए बनी हुई है और ये पत्थरो का बना हुआ है और यहा से आसमान भी दिखाई दे रहा है।

ये एक ऐतिहासिक समारक दिखाई दे रहा है जिसकी दीवारों मे मूर्ति ये बनी हुई है एक पुरुष दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है।